एक सिलाई भी कर रहे है जो सिलाई मशीन हैं वो व्हाइट कलर का है।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहां पे आम का दुकान है।

एक पीला आम बहुत ही अच्छे हैं यहां पे तराजू भी रखा हुआ है उसके पास में आदमी सब भी है।

इस पिक्चर में हम देख रहे कि यहां पे एक बहुत अच्छे ही घर है।

और फैन भी लगा हुआ है वॉल भी चल रहा है।

और उसमें शीशा का गेट लगा हुआ है।

और टी_भी भी लगा हुआ है और फैन भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक--

वो बैठने वाला है और एक आदमी भी अंदर में है जो व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए हैं।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक सड़क है सड़क के--

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक सरक हैं।

सड़क के ऊपर एक का ओवर ब्रिज है।

बाहर में इंटा रखा हुआ है और यहां पे कुछ बना भी है।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक टावर है और टावर बहुत ही ऊंचे है।

जो होटल है उसमें और बहुत सारे चेयर लगा हुआ है वो रेड कलर का है।

इस पिक्चर में हम देख रहे की यहां पे एक मंदिर है।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक स्कूल है।